नीचे में डेस्क वगेरा बना हुआ है टेबल वगेरा कुर्सी भी लगा हुआ है ब्लैक कलर का चक्का --

थोडा सा मैदान है जिसमे साइड में फूलपत्ती लगाया गया है --

हरा भरा पूरा अच्छा दिख रहा है और आसपास में घर भी बना हुआ है --

और बैग मॉल में बैग टंगा हुआ है और लोग देख रहे है --

ये एक मूर्ति है किसी भगवान का लग रहा है बुध भगवान का मूर्ति है --